तस्वीर में हमें एक पार्क जैसा दिख रहा है इसमें सदाबहार का फूल का पौधा दिख रहा है दो बड़े पौधे दिख रहे हैं।

जिस पे फूलों की माला गेंदा के और बेलपत्र चढ़े हुए हैं।

त्रिशूल भी दिख रहा है लक्ष्मी माता की मूर्ति दिख रही--

एक पंखा दिख रहा है एक बोर्ड दिख रहा है।

और उसके पास प्लेट धरा हुआ है उसके ऊपर एक कटोरी धरी हुई --

बहोत सारे पुरुष हैं बहोत सारी महिला बच्चे भी हैं।

महिला भी दिख रहे है बहोत सारे लोग भी है।

तस्वीर में हमें एक बिल्डिंग जैसा दिख रहा है जो वाइट कलर काले कलर का पोता हुआ है।

तस्वीर में हमें एक सफेद कलर की अलमारी दिख रही है जो की खाचेदार है।

एक आदमी का चित्र दिख रहा जो वाइट कलर काले कलर की धारी का --

कांच की खिड़की भी दिख रही है दरवाजे भी दिख रहे हैं।